यहाँ पर एक नदी की तस्वीर दिखाई दे रही है नदी के ऊपर में एक बड़ा सा पूल दिखाई दे रहा है पूल के साइड में एंगल लगी हुई है पीले कलर से एंगल को पेंट किया गया है।